लग रहा है। बहुत सुन्दर लगा रहा है। बहुत ही अच्छा जगह है। देखने में बहुत सुन्दर लग --

यह बहोत बड़ा जगह है। लग रहा है स्टेशन है। बहोत सुन्दर लग रहा है। वहाँ चेयर पर काफी लोग बैठे हैं। बहोत ही सुन्दर जगह है और यहाँ पे सबकुछ लग रहा है।